बहुत ही सुंदर लाग रहे है और एक स्तूप बना हुआ है।

बहुत बीच मे से बहुत बड़ी नदी जा रही है नदी के अगल बगल बहुत बड़े मैदान है बहुत जंगल है।

बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और बहुत ही ब्लू आसमान दिख रहा है।

यह बहुत बड़ा ग्राउन्ड है। ग्राउन्ड मे कुछ लोग खड़े हुए है। यहा कुछ बोरिया ढकी हुई है।